दे रहा है और साथ में बाजू में छोटे-छोटे कुंडे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं वो लोग कुछ योगा जैसा आसन कर रहे हैं।

और तालाब भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहुत सारी ग्रीनरी दिखाई दे रही है ।

औ व्हाइट औ जो है जो व्हाइट ग्रीन --

और झाड़ भी दिखाई दे रहा है इस चित्र में मुझे।